ये एक बहोत बड़ा सा कॉलेज है।

और बीच में डिवाइडर बना है जिनमें काले और पीला कलर लगा हुआ है।

और साइड में एक कपड़े का शोरूम है जिसका दरवाजा शीशे का है।

और पेट्रोल पंप की छत सफेद कलर की है।

जिसमें बहोत सारे झूले लगे हुए हैं।

कुछ छोटे छोटे टेंट लगे हुए हैं।

और नीचे एक गाय माता की मूर्ति है।

और वॉल शीशे के रैक में बहोत सारे जूते लगे हुए हैं।

जिसमें बहोत सारी बसें खड़ी हैं।

आगे वॉल टीन शेड डला हुआ है जिसमें कुछ पंखे भी लटके हैं।

ये एक यामाहा का शोरूम है।

और साइड में एक स्टील की रैली दिख रही है।

और बाकी औरतों ने अलग साड़ी पहनी हुई।

और एक छतरी टाइप में एक बोहोत सारी बनी हैं।

सामने मुखोटे दीवारों पे लटके हैं।

जिनके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है।

और छत के ऊपर ऑरेंज और सफेद कलर के गुब्बारे लगे हैं।

बीच में लोहे की रेली लगी है।

लटकी हुई है सामने एक लाइट चमक रही है।

ये एक बहोत बड़ी सी पार्क है जिसमें बहोत सारे पेड़ लगे हैं।

बड़ी सी मस्जिद दिख रही है जिसकी गुंबद और मीनारे भी दिखी रही है।

और कुछ बहुत बड़े से पहाड़ भी दिख रहे हैं।

जिसमें दो डस्टबिन दिख रहे हैं।